ऐसा हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा छोटे छोटे पार्क जहां पे बच्चे आते हैं खेलते हैं बच्चे लोग--

वगेरा के लिए असे कैफ़े हर जगह उपलब्ध होते है जहाँ देख पा रहे आप यहाँ हर जगह ये आपको कैफ़े मिल जाएगा ऐसे कैफ़े हर जगा उपल--

पहाड़ है ये देख पा रहे पहाड़ है लाइट वाईट भी लगा हुआ है तो पहाड़ी एरिया है अंधेरे में कोई व्यक्ति खड़ा है पहाड़ में अपना फोटो शूट कर रहा --

पहाड़ तो आपको कहीं पे भी देखने को मिल सकता है इसलिए इसमें कुछ खास बताने का नहीं है पहाड़ में।

ये पेड़ पोधो को सजाने के लिए जो घर गार्डेन में आप सजा सकते हैं प्लास्टिक के जो आप देख रहे हैं बाल्टी--

कार का गैरेज है ये देखिये कार चक्का खुला हुआ हैं कार मरम्मत के लिए आया हुआ हु कोई गैरेज का सीन हैं ये ।

किताब की दुकान में ज्यादा कुछ तो बताने को है नहीं किसी भी तरह के किताब के दुकान हो सकती है आप देख पा रहे है।

हॉस्पिटल में से जब जब बनाया जाता है याहाँ पे बड़े लोगों को घुमाया जा सके टहलाया जा सके यह हॉस्पिटल का दृश्य है हॉस्पिटल के --

अ अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी हमे जाना चाहिए खेल के मैदान में ताकि वहाँ सुख ताज़ी हवा हम ले सके।